बॉउंड्री वॉल की साइड पीछे साइड बहुत सारे घर बने हुए है कुछ घर व्हाइट कलर से पेंट किया यहां पे बड़े पेड़ भी लगे हैं ।

इस इमेज में हमें एक शॉप दिख रही है। शॉप के बाहर अं बहोत सारे बोर्ड लगे हुए हैं यहां पे कांच का गेट लगा है। गेट के ऊपर भी बोर्ड लगे हैं। यहाँ पे लाइट लगी हुई हैं।

यहाँं पे पिल्लर पे एक बैनर चिपका हुआ है जिस पे एरो बना हुआ है ये यहाँं पे बहुत सारी खिड़कियां बनी हुई हैं उपर साइड ।

इस इमेज में हमें बहुत सारी रेड कलर की चेयर दिख रही है। यहा पे बहुत सारा फर्नीचर का सामान रखा है। राइट साइड में ऊपर फैन लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे बैलून लगे हुए हैं रेड और व्हाइट कलर के। यहां पर स्टेज बना हुआ है स्टेज पर फ्लावर का डेकोरेशन है।